बहुत ऊंचे-ऊंचे पत्थर है यहाँ पे काले-काले।

वो देखा बड़े बाजार में अपने वाटा का शोरूम --

कितना अच्छा लग रहा है न यहाँ आकर देख।

कितना मस्त भरा है और ये हरे लाल नीले सफेद गुब्बारों से सीजा लेगा इसने गेट को --

यहां किसी का शोर शरावर नहीं है कोई नहीं।

और उसकी रिपेयरिंग करेंगे यहां के मिस्त्री। बोहत बड़ा गैरेज है ये।

ये नेकर वाला काली वाली काली टीशर्ट वाला और उसके पीछे भी येलो --

और क्या कहते हैं ये ऑटो रिक्शा वाले जो अगर ये नहीं जाये मार्केट के अन्दर नही जाएं तो जाम नहीं लगेगा लेकिन ये जरुर जाते है तो जाम लग जाता है।

और ये कम से कम चार पांच किलोमीटर दूर चलने के बाद में उड़ता है।

पैसा नहीं है। लोन लेना है तो वे अपनी चीजें रख के --

और घर पे लेकर चल रहे हैं और आज मछली की फ्राई पकोड़ी खाएंगे।

और कितना ऊंचा बना ऐसा लगता है। यहां पे पूजा हुई है तो पुरे मोहल्ले में रहे है।

और यहां बहुत अच्छे-अच्छे लोग बगाते हैं नाने लड़कियां भी लड़के भी दोनों एक साथ आ सकते हैं।

और यहां सबसे बढ़िया बात ये है बोहोत गहरा स्विमिंग पूल है। नहाने में बहुत मजा आता है ऊपर से कूदने में --

आ देखो पूजा हो रही है।

यहां जंगल है जंगली इलाके में कितना मस्त लग रहा है और बहुत बढ़िया लगता है।

और देख सकते हैं यहाँ मजे से रहते हैं और झूले में बैठते हैं लोग बाग मुझे तो बहोत डर लगता है झूले में बैठने से ही।

और ये ऐसा लगता है कि जैसे कि पेट्रोल डाल रही हो पेट्रोल पंप पे।

ये जो पंप में जो नीचे को बोलेते हैं ना टैंक लगे हुए लोहे के उसमें पेट्रोल कर रही है ये गाड़ी और ये यहां से चली --

ये देखो कई सारी नाव चलती हैं यहां पे।

ये देखो चिकन है और ये चिकन लॉलीपॉप चिकन है और इसके साथ में देखो हरी चटनी है।

और ये बहुत स्वादिष्ट लगता है और कित्ता अच्छा है ये चार पीस दिए है इन्होने हम चारो दोस्त है।

और इसको खाते है एक-एक बहुत टेस्टी लगता है ये सलाद।

यहां पर पत्ता को भी हुई है हमने जो कि काफी बड़ी-बड़ी हो गई।

और यहां ना ये बहुत अच्छा है ये देखो कैसे खड़ा है।

आज कुछ बर्तन ख़रीद के लाते हैं।

उसको बनाना है अच्छे से और उसपे थर्माकोल का एक वो लेना है।

फुटबॉल के कबड्डी और आज शायद देखो कोई मैच है।

क्योंकि यहां पर काफी सारे बंदे आए हुए हैं।